यहाँ पे एसिड रखा है फिनायल रखे है यहां पर एक चिप्स टंगी है यहां पर काफी चीज़े मिलती है।

इस जिम के अंदर औटोमेटिक मशीन है जो की मशीन काफी महंगी होती है और यह काफी हेवी मशीने है ये रेनिंग वाली मशीने है जहां पे लेडिज जेन्ट्स बुजुर्ग एण्ड जो भी मतलब--- ]

गणेश जनरल स्टोर दूध दही लस्सी कोल्ड ड्रिंक एवं दूसरे सामान्य सामान उपलब्ध हैं।

यहाँ पर एक मशीन व यहाँ पर मशीनों का नया जिम चल रहा है यहाँ पर येल्लो ग्रीन कलर की टी-शर्ट में लड़का कर रहा है जिम यहाँ एक लड़का जीन्स और शर्ट में खड़ा हुआ है और यहाँ पर काफी सारे लोग खड़े हैं।